यहाँ पर हम सब देख पा रहे है कि बजाज एजेंसी है यहाँ पर काफी बाइक खड़ी है ।

और जिम की मशीने भी है और नीचे उसमे जो कालीन बिछा हुआ है वो ब्लू और स्काई ब्लू में है।

यहाँ पर हम सब देख पा रहे है कि सामने एक मंदिर जो ऑरेंज व्हाइट कलर में पेंट है ।

और जिस पे डेकोरेशन भी हुआ है फ्लावर्स से वे बहुत और उसके सामने एक खंभा है जिसमें काफी वायर गए हुए है ।

यहाँ पर हम सब देख पा रहे कि एक श्री शक्ति ऑटो मोबाइल सर्विस सेंटर है ।

एक के सामने दिखाई दे रहा है और सामने कुछ कपड़े भी नीचे पड़े हुए हैं | एक बगल में ट्रा --

और उसके सामने काफी आदमी लाइन से भी है एक बैठे हुए भी है और एक छोटा भी फोटो है जिस पे माला चढ़ा हुआ है ।

काबुली चने लहसुन और तेल साबुन --

जमीन की वजह से मिट्टी भी दिखाई दे रही है सामने खेत भी है ।

यहाँ पर हम सब देख पा रहे है कि कई रेलवे पटरी है जिस पे एक ट्रेन जा रही है और और अगल-बगल जो रेलवे --

यलड़की लहंगा पहनी है और लड़का शेरवाणी पहना हुआ है पीछे डेकोरेट भी किया हुआ है।

उस के सामने एक बड़ा-सा पेड़ भी है | जमीन दिखाई दे रहा है जहां पे मिट्टी दिखाई दे रही है | पीछे कटी हुई लकडियां भी गजी हुई हैं दिखाई दे रही है |